इसमें बहोत तरह लाइट भी जली हुई है जो काफी सुंदर लग रहा है व साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

और टाइल्स लगी हुई जो काफी साफ़ सूथरा दिखाई दे रहा है एक दरवाज़ा भी दिखाई दे रहा है जिसमे का--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

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं एक घर दिखाई दे रहा है जो फूलों से सजा हुआ है घर के पीछे एक खेत दिखा--

जो काफी सुंदर लग रहा है जो साफ है एक ढाबा भी दिखाई दे रहा है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है और दिन--

जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यह एक केबिन है केबिन का अंदर बहोत सारा चेयर दिखाई दे रहा है जो काला रंग का है एक गे --

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं एक शोरूम दिखाई दे रहा उसके बाहर में बहोत सारा--

ठेला लगा हुआ है बाइक भी लगा हुआ है इसमें एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का है।

गिट्टी भी दिखाई दे रहा है इसके पीछे में एक बगान दिखाई दे रहा है जो काफी सुन्दर लग रहा है इसमें छोटा छोटा--